वगैरा के पैकेट्स दिखाई दे रहे है।

यहां पर टेनिस खेल रहे है नेट लगा हुआ है दो लोग इस टीम में है और दो लोग उस टीम में है।